यह साफ रहता है यहाँ पर बहुत इन्जॉय करते है और बच्चे खास करकी छोटा है अच्छा लगता है नहाने मे--

ये भी बहोत ही प्राचीन पत्थरों से बनाया गया है बहोत ही पुराने जमाने का है बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर यहाँ के लोग आते है इसे देखते है बाहर मे पार्क है।

और ये पत्थर बहोत ही पुराने है इसे देखकर लगता है बहोत ही अच्छा--

यहाँ पर ट्रेनर भी दिए है उन्होंने अच्छे से ट्रेन हमें कराते है इस जिम में --

बस्तर वासियों के द्वारा हैंड मेड ढोलक ढोल बाजा सब बनाया गया और बहुत ही --

बढ़िया रूम मन भी अच्छे है यहाँ पर और लोकेसन बहुत ही बेहतरीन हैं ।

मार्केट है यहाँ पर सब सामान मिल जाता है खरीदी कर सकते है यहाँ पर अधिक दुकान लगता है यहाँ पर पास मे होटल भी आपको जो सामान चाहिए--

कांकेर वेली नेशनल पार्क बहुत ही अच्छा और सुंदर जंगलों का अंदर सफारी अ सवारी कराया जाता है यहाँ पर गाड़ी मिलती है और अंदर घुमाया जाता है जंगलों के अंदर --

दलपत सागर आइलेंड इसे इसी साल बनाया गया है बहोत ही अच्छा और सुंदर बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे --